इसी मंदिर में बहुत ही भीड़ है देख सकते हैं काफी मस्त दिखाई दे रहा है देख सकते हैं ।

हेलो गाइस देख सकते हैं यहां पर काफी सारे टोटो सुविधा है बहुत ही जबरदस्त लूक दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को देख सकते हैं ।

हेलो गाइस देख सकते हैं काफी मस्त लोग दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को और ये राइस है ।

हेलो गाइस देख सकते है ये टीचर बता रहे है स्टूडेंट को भी देख सकते हैं ।

और ये लोगो से डांस हो रहा है देख सकते हैं लोग दिखाई दे रहा है ।

बहुत ही मस्त लोग दिखाई दे रहा है और चारो तरफ पाउडर वगैरह छाया हुआ है बहुत --

बहुत ही मस्त लोग दिखाई दे रहा है उधर ग्राउंड लोग फुटबॉल ग्राउंड इसी तरह आप देख सकते हैं वहां पर बहुत मस्त लोग दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को।

बहुत ही मस्त लोग दिखाई दे रहा होगा आपलोगो को और भी यहाँ पे काफी सारे |

ऐसा चीज सब हआ है।

दिखाई दे रहा होगा और ये दीवार है और दीवार पर ये मुझे तो कलाकार चित्रकारी करनी पड़ेगी।